यहाँ पर हमें एक झाँकी टाइप दिख रही है जो की बहुत सुन्दर दिख रही है।

और इसमें बहुत सारी खिड़कियाँ हैं गैलरी है बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं |

और एक लड़का दिख रहा है जो की नदी की ओर देख रहा है उसने टोपी पहन रखी है चश्मा पहन रखा है |

लड़का जा रहा है और दूसरा लड़का उसके फो मोबाइल से वीडियो बना रहा है।

गमला रखा हुआ है एक मशीन रखी हुई है ये गाड़ी येलो कलर की दिखाई दे रही है।

और एक लड़के ने ब्लैक शर्ट पहन रखी है एक ने रेड कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है।

और यहाँ पर हमें बहुत दूर-दूर तक --

यहाँ पर हमें एक कारों का शोरूम दिख रहा है।

छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए हैं जिसमें फूल आ रहें हैं।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमें क्लासरूम दिख रहा है जहाँ पर एक सर --

साइड में हमें बाइक दिख रहे हैं बड़े-बड़े |

और उ उ यहाँ पर डेस्क पर एक बोतल रखी हुई है पानी की जो जामुनी कलर की है।

बहुत ही सुन्दर पेंट किया हुआ है यहाँ पर रेड व्हाइट कलर से --

यहाँ पर हमें एक अ चर्च दिखाई दे रही है जहाँ पर सभी लोग बाहर खड़े हुए हैं यहाँ --